चस्मा है एगो आदमी और कप लेके उधर हांथ बढ़ाया हुआ है।

खान है व्हाइट कलर का पहने लगता है अभी आधे-अधूरा बना है अभी और बनेगा आगे में जाफड़ी टटी है।

नेचर का है हरा-हरा पत्ता है पेड़ है।

उसके हाथ मे ना उ क्लॉक्स लगा हुआ है ।

और एक मस्त ग्रीन कलर का मूर्ति बैठाने के लिए दे दिया --